ये किसी हेयरकट की दुकान लग रही है।

कि यहां पे एक बच्चा सेल्फी लेता हुआ दिख रहा है।

एक ने ब्लैक टी शर्ट पेहनी हुई है।

यहां पे दो चार आई_डी_आर यहां पे दो चार बाइके दिख रही है।

सभी फ्रूट अभी पैकिंग चल रही है।

एक बाइक वाला जा रहा हैं उसके ऊपर--

यहां पे दो चार इंसान और लेडीज खड़े हुए है।

ये किसी जिम का लग रहा है।

दो चार इंसान यहां पे खड़े हुए दिख रहे हैं ऊपर नीला आसमान दिख रहा है जो वाइट कलर का नीला आसमान लग रहा है।

नीचे का फ्लोर व्हाइट दिख रहा--

आदमी यहाँ पे जाते जाते दिख रहें हैं एक एक्टिवा बीच में--

तो गाइस सामने गार्डन है और एक बगीचा है और एक कुर्सी पड़ी है लेले लल ली ली नीला कलर का टॉप पेहना हुआ है।

और एक अंकल उसकी पिछवाड़ा खुदा रहे वो भी दिख रहा होगा एक अंकल और लड़की सामने खड़ी हुए देख रहे हो आप लोग।

म सामने संचा भी है कुर्वाशन भी पड़े हुए--